इस दृश्य मे दिखाए जाने वाली तस्वीर किसी शहर की सड़क की प्रतीत हो रही है।

यह सड़क लाल रंग की दिख रही है। इसमे बहुत सारे लोग कतार मे खड़े हुवे है।